साइड में एक छोटा-सा गेट जैसा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कार बनाई जाती है और यहाँ पे बहोत सारा सामान भी मैकेनिक वाला रखा हुआ है।

सामने बहोत सारी बाइक दिखाई पड़ रही हैं और सामने एक स्कूटी भी खड़ी हुई है। यह मकान के सामने खड़ा हुआ है। यह तीन मंजिल मकान बना हुआ है इसका कलर ग्रीन कलर में है।

पीछे पेड़ दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है। सामने एक आदमी जा रहा है उसने अपनी पॉकेट में हाथ रखा हुआ है।

सामने एक खम्भा जैसा दिख रहा है वहाँ पर एक मशीन है | यहाँ पर सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं| यहाँ पेट्रोल पंप है यहाँ पर सभी पेट्रोल लगवाते हैं सामने एक कार खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है।

सामने घास दिखाई पड़ रही यही जो ग्रीन कलर दिख रही है सामने तीन लोग खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिनके हाथ मे बेट है और नीचे बहुत सारी बॉल भी पड़ी हुई है। साइड मे कुछ जाली जैसा रखा हुआ है।

पीछे कु-कुछ बच्चे लाइन से पीछे साइड से आ रहे हैं और कुछ लोग आगे एक बच्चा जम्प कर रहा है। साइड में घास भी दिखाई पड़ रही है नीचे कुछ वाइट कलर की पट्टी जैसा बना हुआ है जिसके बीच में सब लोग चल रहे हैं।

अंदर एक कांच का दरवाजा लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पे एक टेबल है। वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक साइकिल भी खड़ी हुई है। यहाँ नीचे यह जीने दिखाई पड़ रहे है।

पिक्चर में सामने एक स्टैचू दिखाई पड़ रहा है स्टैचू के सिर पर बाल दिखाई पर रहे हैं जोकि ब्राउन कलर के हैं। सामने एक छोटी-सी बच्ची का --

इसमे सामने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का गेट दुआ हुआ है नीचे जमीन ग्रे कलर की दिखाई पड़ रही है साइड मे रेलिंग बना हुआ है इटो का।

दिखाई पड़ रहा है| वहां पर बहुत सारी बाइक भी खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है| बगल में एक बैनर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है| व्हाइट कलर का वहां पर एक मकान भी बना हुआ दिख रहा है।